यह एक चर्च है चर्च में बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं।

यहां ऊपर बहोत सी सजावटें की गई है। यहां ऊपर एक पंखा दिखाई दे रहा है।

यह एक मेट्रो स्टेशन है मेट्रो स्टेशन के ऊपर लखनऊ मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिखा हुआ है।

उसके बगल में डिवाइड दिखाई दे रहे हैं।

यहां नीचे सामने टाइल्स लगा हुआ है।

होटल के रूम का इंटीरियर पिंक कलर का है।

यहां रोड दिखाई दे रहा है यहां रोड पे बहोत सारे लोग जाते हुए दिखाई दे रहे हैं।

यहां पर हल्का अंधेरा है यहां सामने बड़ी नदी दिखाई दे रही है।

यहां पर सामने बहुत ही हरियाली दिखाई दे रही है।

यहाँ पीछे बहुत सारे बड़े बड़े पौधे भी दिखाई दे रहे हैं।

यहाँ बगल में बहुत सारी सजावटी की गई है।

यहां पर बहुत ही लाइटें जल रही हैं यहां पर बहुत ही सीढ़ियां दिखाई दे रही हैं।

घर के ऊपर गुंबदकार स्ट्रक्चर बना हुआ है।

दुकान के अंदर एक आदमी हरे कलर का टी शर्ट पहने हुए है।

यह एक हवाई अड्डा है हवाई अड्डे पे एक बहुत बड़ी जहाज खड़ी हुई है।

यहां पर एक औरत एक बच्चे के लिए हुए दिखाई दे रही है।

यहां पर एक फुटबॉल भी रखा हुआ है यहां पर बगल में नीले और सफेद कलर के वैल्युन रखे हुए।

यहां पर नीचे हरे कलर की मैट बिछी हुई है।

यहां पर नीचे जमीन पे बहुत सारे खरपतवार दिखाई दे रहे हैं।

यहां पर एक बगल में पीले कलर का इमोजी भी रखा हुआ है।

यह एक पौधों की नर्सरी फार्म है यहां पर गमले में बहुत सारे पौधे दिख रहे हैं।